यह स्कूल है इसमें एक साइड में बच्चे बैठे हुए हैं।

ये अगर खरीदेंगे अपने घर पे रखेंगे तो घर में--

यह कॉलेज का क्लास चल रहा है यहां पर टीचर --